स्टूल भी लकड़ी के बने हुए कुछ चेयर भी रखी हुई है वाइट कलर की और लोहे की बनी हुई है।

एवं सफेद कलर की बॉटल रखी हुई है उनमे कुछ लाल लाल जूस भरा हुआ है बहुत सारे सामान रखे हुए है कुछ साबुन भी दे रहे है नीचे सफेद कलर की टाइल्स हो रही है।